तथा यहाँ के आधार पर यही बच्चे बड़ी-बड़ी कंपनी मे सिलेक्ट किए जाते हैं क्युंकी यह एक टेक्निकल सेंटर है।

था का सामान के होने की वजह से यह मूसिउम एक ऑडिटोरियम के रूप में दिखाई दे रहा है। इसमे अंदर छोटी-छोटी मूर्तियां रखी हुई हैं।

इसमें मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है तथा मशीनों के द्वारा एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में निर्माण करने की पूरी कार्यावत प्रणाली दिखाई देती है।

शोभा को बड़ा रहा है तथा सूर्य की किरणो से निकालने वाला प्रकाश जो पानी पर पड़ रहा है। वह भी उसकी सुंदर --

यह एक ऐन्जलस ग्रोस्री की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ग्रोस्री चावल आटा दाल चीनी चाय पत्ति दाले --

फूड प्रोडक्ट दिखाई देते हैं तथा ग्रॉसरी से संबंधित सभी प्रकार के चॉकलेट मीठा सभी तरह के सामान इस प्रकार के दुकानों में दिखाई जा सकते हैं। यह --

यह एक मालगाड़ी के डब्बे का समूहित चित्र दिखाई दे रहा है।

इस परनाली के आधार पर आसानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच --

जो सामुहिक रूप से व्यवस्था का निर्माण कर रही है तथा कार्य पद्धति के अनुसार --

जो सुबह का सुंदर दिखाई देने की वजह से बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। जिसकी प्रतिम बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।

ता है इस दुकान का सामूहिक चित्र है। इसमें सभी प्रकार के खेल से संबंधित सभी उत्पाद रखे हुए दिखाई दे रहे हैं तथा मंदिर में साफ़ सफाई के वातावरण की वजह से सुंदर शोभा --

तथा इसकी छोटी-छोटी घासे इसकी शोभा को और सुन्दर बढ़ा रही हैं।

तथा जिसके आधार पर इसकी इसमें खेल खेल कर इसका आयोजन व निर्माण किया गया है इसका स्टेडियम कहा गया है क्योंकि इसकी विशेष सुं --

इसमें एक मंदिर बना हुआ है तथा मंदिर के दरवाजे पर भी समुचित व्यवस्था जमी भी हुई है। जिसके आधार पर सब व्यवस्था के आधार पर निर्माण किया गया है।

यह एक हॉस्पिटल के अंदर का सामूहिक चित्रण दिखाई दे रहा है। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से संबंधित वहाँ पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर के पास खड़ा हुआ है तथा वह वहाँ पर --

खड़े हुए रखे हुए का सीलिन्डर्स का चेकिंग कर रहा है कि कौन से खाली हैं? कौन से भरे हुए हैं?

जो इसकी व्यवस्था का निर्माण करवा रहे है तथा इस व्यवस्था को एक सुन्दर रूप से दिखाई देने में उनका महत्वपूर्ण रूप दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल को भरकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था की जाती है क्योंकि यह एक --

पता है इस ए.टी.एम. के बाहर ए कुछ बाइके भी खड़ी हुई हैं।